यहाँ पर हमें एक ठो चर्च दिखाई दे रहा है जहाँ पर आ व्यक्ति मन दिखाई दे रहा है जिन्होंने ए एक जैसा पोशाक पेहन रखा है।

बच्चों की फिसल पट्टियाँ हमें दिखाई दे रही है ऊपर यहाँ पर पन्निया लगी हुई दिखाई दे रही है लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है घर दिखाई दे रहे है सामने --

यहाँ पर हमे बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारा पानी हमें दिखाई दे रहा है पानी का पूल हमें दिखाई दे रहा है पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।